भूरे रंग का बड़ा टेबल बना हुआ है जिसके सामने ब्लैक कलर की चेयर लगी हुई नजर आ रही है।

जिसमें बहोत सारी बेंच पीछे हुए नजर आ रहे हैं ग्रे कलर की चेयर में--

वाइट बॉर्डर दिखाई दे रहे है साइड में एक ब्ल्यू कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें होली लिखा है।

और व्हाइट कलर के ताकिये नजर आ रहे हैं।

एक रस्सी लगा हुआ है जिसमें टॉवल लगे हुए नजर आ रहे हैं साइड में खिड़की दिखाई दे रही है।

ऊपर एल_ई_डी लाइट्स लगे हुए है।

व्हाइट कलर का दीवाल नजर आ रहा है।

सामने एक बड़ा हॉल नजर आ रहा है।

ब्लू कलर का टीना लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ड्रेसिंग मशीन दिखाई दे रहा है दो बॉटल है गर्म करने का पानी का जग दिखाई दे रहा है व्हाइट टाइल्स लगी हुई हैं।

बोर्ड बना हुआ जिसमें येलो कलर से भारत पेट्रोलियम लिखा हुआ नजर आ रहा है साइड में एक पेड़ लगा हुआ है खंभे लगे हुए नजर आ रहे हैं।